कलर के कपड़े डाल रखे हैं पीछे कोई मशीन भी दिखाई दे रही है।

ये कोई एक फोटो दिखा रखी है इसमें चार लेडीज हैं।

ये कोई स्कूल की फोटो दिखा रखी है पीछे रेड कलर की और नीचे ब्लू बॉर्डर की कोई दीवार है।

पीछे बिल्डिंग भी दिखाई दे रहीं हैं। बहोत कुछ बहोत सारे लोग भी खड़े हैं यहाॅं।

एक ही सामने बहोत बड़ा गेट भी दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का कोई गेट है।

एक व्हाइट कलर का कोट है और एक चॉकलेटी कलर का कोट है जिसके साइड में बहोत सारे सूट्स भी लगाए हुए है।

एंड एक साइड में बोर्ड लगा हुआ है ब्लू कलर का उसके ऊपर व्हाइट कलर में लिख रखा है ई टूरिस्ट --

टेबल के ऊपर एक लैपटॉप भी रखा हुआ है एंड पीछे इसके बहुत सारे नेकलेसेस रखे हुए--

और इनके आगे तीन लड़के हैं जो बैठे हुए हैं और दो इनके हाथों में बैनर भी है बड़े बड़े--

ये कोई एक फोटो दिखा रखी है किसी फंक्शन की फोटो है।

इनके ऊपर ग्रीन कलर से कोई बेल भी लगी है इनमें से बहुत सारा पानी है बह के नीचे आ रहा है।

कोई मूर्ति दगा रखी है यहां के दो घोड़ों की मूर्ति है और पीछे भी कोई मूर्ति है।

ये कोई फोटो दिखा रखी है एक बड़ी सारी बिल्डिंग है।

पीछे कोई चॉकलेटी कलर का सोफा भी दिखाई दे रहे हैं जिसके पीछे बहोत सारी--

इसके पीछे भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

चट्टानों में छोटी छोटी घास भी उगी हुई है।